ऊपर रीलिंग है लाइट लगा है पंखा लगा है नीचे चड्ढा चड्ढा हवै--

हुत सारे चट्टानें हैं चट्टानों के बीच से पानी बह रहा है।